में नदी के कुछ लाइटे भी लगी हुई हैं सुबह का समय है आदमी टहलने के लिए निकलता-निकला हुआ है बहुत सारे तार के पेड़ नदी का किनारा नदी में चलती नावों --

तिरंगा देश की गौरव और आन-बान और शान का प्रतीक है।

एक बड़ा सा पार्क का गैराज या फिर एक बाहर से बड़े से गुरुद्वारे के बाहर पार्क का पार्किंग स्थल जहाँ पे बहुत सारी करे खड़ी हैं।

सैलून जहाॅं पे जिसका नाम डेनिम सैलून है | जिसके बाहर एक युवक फ़ोटो खिचवाने की मुद्रा में खड़ी है खड़ा है |

उसके मुख्य द्वार पे भगवान गणेश का भी फोटो लगा हुआ है।

उस जगह पे घासे उगी हुई है।